यह एक हॉस्पिटल की तस्वीर है ये एक एंट्री गेट है यहां वॉचमैन खड़ा दिखाई दे रहा है।

और सफेद रंग की पीले रंग की और गुलाबी रंग की आइसक्रीम हैं इसमें बहोत सारी चेरी हैं।

अ बहोत नीला आसमान दिखाई दे रहा है यहां छोटी छोटी चट्टाने भी दिखाई दे रहीं हैं।

ये एक कमरे की तस्वीर है इस कमरे में एक बेड दिखाई दे रहा है।